एक फूल है फूल के चारों तरफ पंखुरे निकले हुए है।

एक गार्डन है गार्डन में पेड़-पौधे उगे हुए हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में हरी-हरी घास पत्ती हुई हुई है उसके चारों तरफ भी गार्डन बना हुआ है देखने में बहोत सुंदर लग रहा --

गाड़ी है देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।

और बगल में लकड़ी भी रखा हुआ --